कुछ घर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइटिंग दिखाई दे रही हैं।

और पारक दिखाई दे रहा है। सड़क पर कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।